और यहां पे टेबेल पे बहो सारे सामान रखे हुए हैं। --

यहां पर एक मैदान है बड़ा सा यहां पे कुछ कार खड़ी हुई हैं और कुछ लोग भी यहां पे खड़े हुए हैं।